देख सकते हैं आप यह तिरंगा विशाल फहराया है। जो शान से लहर रहा --

और यहाँ पर हालिया हरीयाली छाई हुई है।

ये जो देख रहे हैं आप एस के कॉलेज यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर ग्राउंड भी है। यहाँ पर बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर --

ये जो आप देख रही है ये गेट बहोत ही विशाल है जो लाहा लोहा का बना हुआ है। उसका अन्दर घर भी है जो टूट गया है और यह तहस नहस हो गया है टूट के। जो आप देख सकते है इस चित्र में।

एक कॉलेज जो है बीडीएस कॉलेज ऑफ़ क्रिमिसेल अलीगढ़ रोड --

ये जो चित्र देख रहे आप यहाँ पर बोहोत ही पुराना चित्र है। बोहोत ही पुराना सलों का घर हैं जहां पर बच्चे लोग घुमने जा रहे हैं। यहाँ पर --